इस मौसम में लोग सभी अपने छतों के ऊपर खटाई खाते हैं बड़े प्यार से।

इस गाड़ी का नाम टोयोटा इन्नोवा है और यह बहुत गाड़ी ख़ास कर टूरिस्ट के लिए यूज़ किया जाता है और घूमने के लिए यह गाड़ी को फ़ैमिली के साथ बहुत मज़ा आये इस गाड़ी में आप सेवन सीटर आदमी को बिठा सकते हैं।

यह एक स्कूटी सर्विसिंग सेंटर है बाइक की सर्विसिंग हो रही है बाइक है।